स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रूकसिन उसपे लिखा हुआ है कम टू लर्न ।

इस तस्वीर में बहोत सारे पेड़ पौधे हैं बहोत हरियाली है और मौसम भी खुला हुआ है।

तरह तरह की गाड़ियां है कुछ ऑटो कुछ बाइक या कुछ स्कूटी ।

उस जगह पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं घूमने के लिए।

मंदिर के पीछे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

मुझे इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि एक दुकान है जो की किताबों की दुकान है।

तस्वीर में मुझे एक हाथी का स्टेचू नजर आ रहा है।

कमरे के बीच में एक बड़ी सी टेबल रखी गई है जिस के ऊपर बहुत सारे रजिस्टर और कॉपियां रखी गई है।

समूह में हर उम्र के बच्चे बूढ़े बैठे हुए हैं।

रात का समय है होटल को नकली पत्तियों और लाइटों से सजाया गया है।

घर के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक हेयर सैलून नजर आ रहा है।

दो लाइटें भी लगे हुए हैं रोशनी के लिए आगे में जो चावल के बस्ते हैं।

चर्च के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं।

और उस उस उसके सामने बहोत सारे बालों का सामान रखा गया है।

इस तस्वीर में मुझे एक कामरा नजर आ रहा है।

मुझे इस तस्वीर में कुछ लोग नजर आ रहे हैं जिनमें से दो रेलिंग पे पाँव रखकर है और एक फोन देखते हुए है।

उनके आगे बहोत सारी गाड़ियां रखी गई है बाइक है और उन बाइक में एक इंसान बैठा हुआ है।